वे कुछ व्यक्तियों ने एक काली रंग की छतरी ओढ़ी हुई है यहाँ ज्यादातर व्यक्तियों ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है सभी के सिर पर टोपी लगी हुई है ।

यहाँ शीशे का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ कुछ लिखा हुआ है यहाँ की दीवारे सफ़ेद रंग की है ।

यहाँ कुछ व्यक्ति वे महिला खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं दो व्यक्ति सामने की तरफ सफ़ेद रंग के कपड़े पेहने खड़े हुए हैं।

यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी व्यक्ति खड़े हुए व बैठे हुए दिखाई दे रहे है ये एक स्कूल जैसा प्रतीत होता है यहाँ बड़े-बड़े --

एक व्यक्ति ने अपने सिर पर तोलिया बांधा हुआ है वे यहाँ फ़र्श पर कुछ घास उग्गी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ रात का दृश्य दिखाया गया है यहाँ लोहे के पुल बने हुए है यहाँ रंग-बिरंगी लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ निचे के तरफ एक सफ़ेद रंग का बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा।

यहाँ की छत सफ़ेद रंग से रंगी हुई दिखाई गई हैं ।

यहाँ एक पुस्तकालय दिखाया गया है यहाँ कुछ कंप्यूटर भी रखे हुए दिखाई दे रहें हैं यहाँ नीले रंग की कुर्सियाँ रखी हुई हैं व लकड़ी की मेज भी रखी हुई हैं।

यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है जो की पुस्तक पढ़ रहे है यहाँ एक व्यक्ति कंप्यूटर के पास बैठा हुआ है यहाँ की दीवारे सफेद रंग की है।

यहाँ कुछ छोटे पौधे भी लगे हुए है ज़मीन पे घास उगी हुई है सामने के तरफ बैठने की जगह बनाई गई है ।

सभी ने सिर पर टोपी लगाई हुए है यहाँ एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है यहां की छतबपर सफेद रंग का --

पंखा लगा हुआ है यहाँ की दीवारे वे छत सफ़ेद रंग की दिखाई गई है यहां कुछ फूलो की माला भी रखी हुई है।

वह सामने की तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ खम्बे पर तार फैले हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ कुछ बॉर्ड भी लगे हुए दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति रिक्शा लेकर जा रहा है ।